हिंदुस्तान प्लाईवुड इम्प्रोम लिखा हुआ है।

और एक ठेले का चक्का दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है पौधे हरे भरे दिखाई दे रही हैं।

एक ने नीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है अ यहां पर दो बाइक दिखाई दे रही है जो काला है।

ईमर कैफे एक गेट दिखाई दे रहा है जो लाल और हरे रंग में हैं और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

किनारे में कुछ छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहा है आसमान सफेद हैं।